ये एक फ्रेशर पार्टी हो रही है जिसमें छत के ऊपर काफी सारी लाइट लगी हुई है और एक डी.जे. कॉलम है। दो इसमें आदमी बैठे हुए हैं जो लेफ्ट साइड देख रहे हैं।

ये एक घर है।

ये एक रीवर का ब्रिज है जिसके ऊपर कुछ लोग खड़े हुए हैं।

ये एक पारक है और पारक में एक झूला लगा हुआ है जिसमें दो बच्चे झूल रहे हैं जिसमें एक लड़का है और एक लड़की है।

और मेन डोर के ठीक सामने पार्क है | पार्क पर रेलिंग बनी हुई है ब्लू कलर की और एक आदमी डोर पर बैठा हुआ है --

एक एक्टिवा खड़ी हुई है ब्लू कलर की और दो बाइक हैं और एक रेड कलर की वॉल का पिलर बना हुआ है।

इसमें एक कार है व्हाइट कलर की और एक आदमी ब्लू कलर की शर्ट में पेट्रोल डाल रहा है।